सामने यहां पर एक नाव दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक सोफा लगा हुआ है।

और यहां एक लंबा सा प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

जहां एक मूर्ति लगाई गई हैं।

में यहां मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

जहां पर ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है।

और आगे की तरफ एक चार पहिया गाड़ी--

और यहां पीछे की तरफ एक दरवाजा दिखाई दे--

और पीछे की तरफ एक औरत खड़ी है।